इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक--

इस साड़ियों की दुकान में सरारा गाउन और--

है कि यह एक तस्वीर खींची गई--

और सामने से बस भी जा रही है।

चित्र में हम देख सकते हैं कि यह चित्र एक गेम जोन का है।

यहां पर ऐसा लग रहा है कि पबिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि यह रात का समय है।

इस चित्र में हम देख सकते है कि यह चित्र एक प्रोफेशनल --

देख सकते हैं कि तस्वीर खींची गई है खींची गई है।

जहां पर सामने दो अंकल बैठे हुए--

जिसमें से कुछ बिस्किटस और ओरियो किटकैट --

इस चित्र में हम देख सक दिखाई दे रहा है कि यहां पर--